और एक यहाँ पे जंगल देखने को मिल रहे है जो बेहद ही अच्छे है और एक पहाड़ भी देखने को मिल रहे है जो पहाड़ के ऊपर एक मंदिर भी देखने को मिल रहे है।

जो तरह तरह की मछली रखी गई है यहाँ पे--

विजय दशमी के दिन और बहुत भीड़ भी होगी शाम के टाइम में --